एक ग्राउंड है फ मूल वगैरा हैं टेंपू वगैरा गाडी वगैरा खड़ी स्कूटी वगैरा चेयर पर बैठा हुआ गाडी पार्किंग में लगी खुला आसमान है।

पाईप से लगा रखा जिसके अंदर है चारा का डिब्बा रखा है ब्लू कलर का घास है पीछे--

एक मेज को ऊपर रख रखे हैं सफेद कलर और कॉफी कलर का लाइन है।

ये एक रूम है जिसपे एक चेयर है एक--

येलो कलर का एक जाल सा लगा हुआ है ब्लू कलर का सैनिटाइजर रखा हुआ बहुत सारे आदमी बैंक के अंदर हैं।

एक पर्दा लगा हुआ है रेड कलर का एक आदमी बेड पे लेटा हुआ अखबार पड़ा है एक और साइड में कोई दिखाई दे रहा बैग वगैरह टॉवेल वगैरह है दीवार पे घड़ी है।

स्कूल वगैरह बहुत बड़े बड़े पेड़ ग्राउंड में कुछ समान गिरा हुआ खंबे वगैरह लग रहे लाइट वगैरह--

ये एक आदमी जिसने हरे कलर की अह शर्ट अह टी शर्ट पेहनी हुई है और--

यह एक रोड है जिस पे बहुत सारी मिट्टी हैं बहुत सारी दुकान दिखाई दे रही हैं एकदम पूरा जिसके पीछे अटैचिंग मशीन है एक गमला है।

कुर्सी वगैरा शीशे के कुछ समान वगैरा तस्वीर टंग रही कॉफी कलर के पर्दे हैं डस्टबिन वगैरह है रखी है फर्श है टाइल वगैरह गिर रही हैं।

जुडो कराटे वाले बच्चे जुडो कराटे खेल रहे हैं एक बड़ा बच्चा है गाड़ी वगैरह खड़ी हैं पौधे वगैरह बिल्डिंग वगैरह ए_सी वगैरह लग रहे हैं।

अलग अलग के गमले हैं पौधे हैं। काट के बॉक्स बन रहे हैं। घड़ी लग रही है एल_ई_डी के ऊपर भी--